जिस पर न्यू हैंडसम मैन पार्लर लिखा हुआ है।

जिसने तौलिये को ओढ़ा हुआ है।

यहां एक लड़का काले कुर्ते में दिखाई दे रहा है जिसने अपने गले में पेले कलर का स्टॉल को डाला हुआ है।

वे एक टेंपू काले रंग का खड़ा है जिसपे अतुल लिखा है वे एक बस नील व सफेद रंग की है।

सामने कुछ तोलिए टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।